जैसे पाइनएप्पल पपीता सेब केला और भी बहुत सारे तरह के फल तरह तरह फ--फ्रूट्स यहाँ पे बेचे जा रहे है।